यहाँ अ बहुत सारे लोग जो है वो व्यापार व्यापार भी कर रहै है।

बेकरी आइटम्स को हमें देखने को मिल रहा है और इस पर जो हमें केक का--

जो बाइक्स पर है और यहाँ पे ऑटो रिक्शा की हमें दिख रही है और यहाँ पे एक बाडीह बस हमें देखने को मिल रही है।

इस सह चित्र मे हम देख सकते है की यहाँ पर एक बड़ी सी हवेली हमें देखने को मिल रही है।

डैमेज डैमेज होकर खड़ी हुई है इसके आगे जो है यहाँ आ यह कार के वायर सब कुछ दिख रहे है।

इस चित्र मे हम देख सकते है कि यह बहुत ही बड़ी हवेली हमें देखने को मिल रही है।

हवेली सा हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पास बहुत सारे पत्थरों को भी हमें देखने को मिल रहा है।

इस चित्र मे हम देख सकते है कि यहाँ दो व्यक्ति है यहाँ आ यहाँ नृत्य करते हुए हमें दिखाई दे रहे है।

और यहाँ पर झाड़ को भी हमें देखने को मिल रहा है और पौधों को भी हमें देखने को मिल रहा है।

और आगे जो है एक व्यक्ति खड़ा हुआ है वह गेंदे रंग का सा टी-शर्ट पहने हुआ दिखाई दे रहा है।

जो हा जो काले रंग का हमें देखने को मिल रहा है।